दीखता है जैसे की छोटे बच्चे या बड़े भाई लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।

और ये फोटो का कलर ब्लैक एंड वाइट है।